इस फोटो में सामने एक रोड दिख रहा है। जिसके बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो कि सफेद कलर की है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे हैं सो पीछे एक पर्दा भी दिख रहा है जो कि ब्लू कलर का--

इस फोटो में गार्डन जैसा दिख रहा है यहां पर चलने का रास्ता है और दोनों तरफ छोटे छोटे घास उगे हुए हैं।

और एक बड़ा सा पेड़ उगा हुआ है। कुछ बैठने के चेयर रखा हुआ है जोकि ग्रीन और ऑरेंज कलर का है।

सामने एक गेट है जो की रेड कलर का है और नीचे बहुत सारा सीढ़ी है सीढ़ी के दोनो तरफ बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं।

हमें बहुत सारे पैसेंजर्स और कुछ वर्करस भी दिख रहे हैं।

पीछे एक बड़ा से बिल्डिंग है जो कि व्हाइट और ब्लू कलर का उसपे बहुत सारे शीशे लगे हुए है।

और आसपास छोटे छोटे शॉप है जिसके ऊपर करकट लगा हुआ है आसपास बहुत सारे आदमी और औरतें लाइन में खड़ी है।

कपड़े सिलने का मशीन रखा हुआ है और एक फैन रखा हुआ है।

और दीवार का कलर सफेद है सीलिंग का कलर ब्लैक है उसमे बहुत सारी लोहा लगा हुआ है और बहुत सारे लाइटें लगी हुई हैं।

इस फोटो में सामने एक ढाबा दिख रहा है जिसके दीवार का कलर सफेद है और ऊपर एक रेड कलर का बोर्ड लगाया हुआ है जहां पर पहाड़ी ढाबा लिखा हुआ है।

और पौधे भी रखे हुए हैं बचने के लिए सामने टेंट जैसा दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर का है।

दीवार और सीलिंग का कलर का सफेद है। सीलिंग पर बहुत सारी लाइटें जल रही हैं सामने एक पोस्टर चिपकाए हुआ है।

इस फोटो में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिख रहा है। जिसके दीवार में एक लाइट जल रहा है। और रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक जू दिख रहा है यहां पर एक पिंजरा जैसा दिख रहा है और इसके अंदर बहुत सारे हिरण हैं।

वहां पे बिरयानी बन रही है और दो तीन चेयर पर कुछ आदमी लोग बैठे हुए हैं शॉप के ऊपर एक बोर्ड है यहां पर हैदराबाद बिरयानी लिखा हुआ है।

दो-तीन आदमियां यहां से सामाने खरीद रहे हैं। नीचे जमीन पर ये व्हाइट कलर के ब्रिक्स लगे हुए हैं और ऊपर एक कड़कट से शेड बनाया हुआ है।